और इन बास्केट में अपन कपड़े बर्तन वगेरा रख सकते हैं।

यह एक जगह है और इस जगह में बिल्डिंग है और मोटरसाइकिल भी है | साइड में बैंक भी है और सुन्दर मार्केट है |